यहां पे एक ऊं ग्रोसरी का दुकान है यहां पे हर एक रंग का सामान मिलता है और यहां पे--

और तीन लड़कियां है और एक बच्चा है जो कि तीनों लड़की जींस पहनी हुई हैं और ये--

इनके बगल में रखा गया है जो की दीवार का कलर वाइट है और एक मेज़ पे रखा गया है जो की मेज़ का कलर ब्लैक है।

यहां पे एक भगवान का फोटो है और यहां पे बहुत सारे--

मंदिर है और यहां पे मंदिर का दरवाजा ब्लैक कलर टाइप से है।

यह बहोत बड़ा पुल नजर आ रहा है और यहां पे एक लाइट भी लगाया गया है।

यहाँ पे एक अ बहुत बड़ी मिठाई का दुकान है और यहाँ पे रंग-बिरंगी मिठाइयाँ बनी हुई हैं।

और नीचे का कलर ब्ल्यू है और यहां पे--

एक डमरू रखा गया है जो की रेड और येलो और से कलर से बनाया गया डिजाइन --

यहां पे ब बस तीन--

वाइट जींस पेहना हुआ है और लड़का ब्लैक कपड़ा पेहना हुआ है और --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

जो कि पाइप का कलर भी सेम बन यलो और ग्रीन से बनाया गया है।

और यह पे बहोत ही बड़ा पीपल का पेड़ है।

अं सारे पत्ते उसके हरे भरे हैं और यहां पे--